यहां टेबल के ऊपर सीजर है यहां पेन है।

यहां पे दीवार पे बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे है।

यहां पे बहुत सारे कीज दिखाई दे रहे हैं।

बड़ा सा ग्राउंड है बड़े बड़े झाड़ियां हैं।

यहां चर्च के अंदर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये ये बतख काले रंग के हैं इनके चोंच बहुत बड़ी सी दिखाई दे रही है।

यहां पे बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो बड़े बड़े बसेस दिखाई दे रहे हैं।

ये ब्लू कलर की मशीन है यहां पे कुछ व्हील्स है।

भाकरे पुलिस यहां पे आस पास पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग झाड़ियां आसमान दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का लहंगा पहनी है दुल्हा यहां पे गोल्डन कलर का --

यहां पे बड़ा सा सड़क है सड़क पे बहोत सारे लोग हैं।

यहां पत्तर का गुफा दिखाई दे रहा है।

यहां पे सीढ़ियां हैं छोटे पत्थर बड़े पत्थर --

स्टील का ग्रिल दिखाई दे रहा है और यहां पे --

और यहां पे रस्सी दिखाई दे रही हैं कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे सफेद कलर के पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे।

यहां पे चार्ज है यहां बड़ा सा प्लस मार्क है यहां पे बाह --

और यहां बहुत सारे लाइट से लोग है बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है।